मुझे इस तस्वीर पर सोफा और टेबल दिख रही है।

उसके सामने में एक घर भी है जो कि व्हाइट कलर में पेंट किया गया है।

यहां पर बहुत सारा गाड़ियां रखा हुआ है।

और पीछे में भी एक बिल्डिंग दिख रही है और बहुत सारे दुकान भी दिख रही है।

के अंदर मुझे इंसान दिख रही है।

और बिल्डिंग के बाहर की जगह भी दे रही है।

और पीछे जाने का रास्ता भी दिख रही है।

जहां बहुत सारा इंसान बैठा हुआ है और फ्लोर भी टाइल्स से बनाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर पर केनरा बैंक लिखते हुए घर दिख रही है।

उसमें ढेर सारा इंसान भी बैठा हुआ है।

मुझे पेड़ भी दिख रही है और मुझे आकाश भी दिख रही है।

मुझे पेड़ पौधा भी दिख रही है।

और वॉच भी लगाया हुआ है नीचे में दरवाजा भी दिख रही है।

और इस होटल को बैलून से डेकोरेट किया गया है।

टेबल का ऊपर एक स्कैनर भी रखा हुआ हैं।

को शाइनिंग लाइट से डेकोरेट किया गया है।

चर्च के बाहर पर बहुत सारे इंसान भी दिख रहे हैं।

और ढेर सारे वायर भी दिख रही हैं।

मुझे इस तस्वीर एक गेट दिख रही है जिसके ऊपर लाइट लगाया हुआ है।

नीचे में मुझे रस्ता भी दिख रही है।

ये एक इंसान काम करते हुए दिख रही है।

और ऊपर में एक सीढी भी दिख रही है।

और मुझे बाहर के लोग भी रही है।

मुझे एक इंसान भी बैठे हुए दिग रही है।

भी लगा हुआ है और फैन भी दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर पर एक दुकान दिख रही है।

ये इस तस्वीर पर एक दुकान दिख रही हैं।

और ढेर सारे लाइट भी ऑन करके रखा हुआ है।

ये सामने में बहोत सारे पेड़ पौधा भी दिख रही है और--

और मुझे उसे पर टॉयलेट भी रही है।

और पाइप भी दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर पे एक कमरा दी गई है।

उस पर एक अलमारी है जहां पर फ्लावरपॉट रखी है।